यहाँ पर एक पेट्रोल पम्प जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिस के आगे भारी सी ट्रक जैसा खड़ी हुई है आगे कुछ व्यक्ति खड़े देखे जा सकते हैं पीछे भी कुछ गाड़ियां खड़ी देखी जा सकती हैं एक --

हरे हरे घास उगे होंगे पीछे कुछ तलाब जैसा देखा जा सकता है जिसमे पानी भरा हुआ हैं पीछे कुछ हरे-हरे पेड़ भी देखे जा सकते हैं ऊपर आकास भी देखा जा सकता हैं यह दृश्य काफी सुन्दर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक साथ बड़ी-बड़ी गाड़ियां खड़ी देखि जा सकती हैं पूरी गाड़ियों का कलर सफ़ेद है।

पिंक दिखाई दे रहा हैं कुछ बॉल का कलर अ ओरेंज दिखाई दे रहा है कुछ बॉल का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है कुछ बेट के ऊपर कुछ अ-अ स्टीकर जैसे साटे गए है जिसपर अलग अलग ब्रेंड लिखे गए हैं।

यहाँ पर रेल लाइन की पटरी देखि जा सकती है पीछे कुछ रेल लाइन भी है ट्रैन भी देखि जा सकती है अलग बगल कुछ व्यक्ति भी खड़े देखे जा सकते हैं पीछे भी कुछ व्यक्ति खड़े देखे जा सकते हैं ऊपर कुछ छत जैसा भी बनाया गया है ऊपर कुछ तारें भी गई हैं रेल लाइन के ऊपर --

यहाँ पर कुछ बॉटल ऊपर रखे देखे जा सकते हैं जैसा ये तेल की बॉटले दिखाई दे रही है अलग बगल कुछ हरे कलर के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जिस पर काले कलर से कुछ लगाया गया है नीचे कुछ --

यहा पर बहुत से पीलर देखे जा सकते हे जिसके ऊपर छडे निकली हुई देखि जा सकती है आगे कुछ तगाड़ देखे जा सकते है बहुत सी गिट्टियां देखि जा सकती हे जो फेकी हुई हे पीछे कुछ अ --

पर्वीय काउंटर जैसा कुछ बनाया गया है हो ब्लू कलर से पेंट किया गया है ऊपर पंखे लगे हुए है पंखो का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसके बगल में एक छोटा सा लाईट लगाया हुआ है जो बुझा हुआ है।